वह पाँच मंजिल की है सभी में खिड़कियाँ लगी है और काफी सुन्दर डिज़ाइन है।

गारमेंट्स की दुकान है हिमानी गारमेंट्स में काफी सुन्दर --

लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं पूरी विंडो में लाइटिंग लगी हुई है दो चेयर है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।